और बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर भी नजर आ रहे हैं शॉप --

जैसा कि देख पा रही हूं। एक लाल कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है।

गेम के लिए कुछ सर्कल प्रॉप भी यूज किए जा रहे हैं जो की ऑरेंज ब्लू ग्रीन कलर के भी हैं कुछ बच्चों ने येलो कलर के टी_शर्ट पेहने हुए हैं।

और ब्लैक कलर का शूज भी पहना हुआ है सेंटर में कुछ वाटर बोतल रखी हुई है जो ऑरेंज कलर और ब्लू कलर की है।

जैसे कि देख पा रही एक बस नजर आ रही है जिसमें ब्‍लू कलर की सीट बनी हुई है उसमें ब्‍लैक कलर का लेदर अटैच किया गया है।

कोका कोला बोतल नजर आ रही है अचार के पैकेट नजर आ रहे हैं बहुत सारे केचप की बॉटल्स भी नजर आ रही हैं।

जैसा कि देख पा रही हूं एक रूम नजर आ रहा है जहां पर बहोत सारा लोहे का कबाड़ रखा हुआ है रूम की दीवार व्हाइट कलर की है।

दीवार पर कई जगह लकड़ी का सामान भी टंगा हुआ है कबाड़ के ऊपर एक जगह इंची टेप भी रखा हुआ है कबा--

चेयर्स पर एक लेडी बैठी है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं चर्च की वॉल पर क्रॉस जीसस जी भी टंगा हुआ है चर्च --

पेट्रोल पंप पे लोगों की भीड़ नजर आ रही है जो अपनी--

जो अपनी स्‍कूटी और बाइक पर है पेट्रोल पंप पर एक बड़ी सी टी_वी स्‍क्रीन भी लगी हुई है पेट्रोल पंप के पास में एक पेड़ नजर आ रहा है पेट्रोल पंप --

जिन्होंने पुलीस का यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसी के पास में एक बोहोत बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है पेड़ के पास--

जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों का टॉय शॉप नजर आ रहा है इस शॉप पर छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे ब्‍लैक कल --

बच्चों के खेलने के लिए बास्केटबॉल स्‍टंब नजर आ रहा है शॉप की सीलिंग पर बहुत सारी लाइट लगी हुई है ऐ_सी भी लगा हुआ है।

लगी हुई है रोड के पास में एक बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है रोड पर एक बाइक वाला नजर आ रहा है जिसने ग्रीन जैकेट पहना हुआ है और रेड कलर का --

बैग टांगा हुआ है रोड पर और भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपनी अपनी बाइक पर हैं।

इसी बोर्ड पर ब्लैक कलर से मयूरी लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे नंबर वन ई रिक्शा कंपनी लिखा हुआ है इसी बोर्ड प--

एक जगह येलो कलर का बोर्ड बनाया हुआ है जिस पर हंड्रेड परसेंट प्रीमियम लिखा हुआ है।

जैसा कि देख पा रही हूं यहां कई कमरे नजर आ रहे हैं कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को वाइट कलर से पेंट किया गया है।

एक और आदमी बाहर है जिसने व्हाइट कलर का शर्ट पेहना ब्लू कलर का जीन्स पेहना हुआ है आस-पास एक दो मकान दिख रहे हैं और आस-पास हरी-गरी घांस भी दिख रही है।

बोर्ड के जस्ट पीछे एक मकान नज़र आ रहा है जहां पर एक ग्रीन कलर का झण्डा भी नज़र आ रहा है और रैड --

तो इसके जस्ट नीचे प्लास्टिक की कुर्सियां काफी सारी लगाई गई है कुर्सियों पर एक जगह दो आदमी बैठे हुए हैं।

जैसा कि देख पा रही हु ऑरेंज कलर का स्टूल है जिसके ऊपर ब्लैक और ऑरेंज कलर का पानी का जग रखा गया है।

पास में प्लास्टिक की पानी की बोतल है पास में एक हथोड़ी भी रखी है इसका फर्श ब्लैक कलर का है जिसको येलो कलर से बॉर्डर किया गया है इसकी दि‍वाल--

जैसा की देख पा रही हूँ एक हॉल नज़र आ रहा है हॉल की फर्स पर टाइल्स लगी हुई हैं हॉल के--

रिक्शेवाला नजर आ रहा है एक बाइक वाला भी नजर आ रहा है रोड पर एक ऑरेंज कलर का मंदिर भी बना हुआ है रोड के--

और एक ब्लैक कलर का बैग टंगा हुआ है और शूज भी पहने हुए हैं।

जैसा कि देख पा रही हूं ये दुकान नजर आ रही है दुकान में लकड़ी के फर्नीचर के बॉक्स बने हुए हैं बॉक्स --

बॉक्स में कही सारी अगरबत्तियों के पैकेट्स रखे हुए हैं कही --

जैसा की देख पा रही हूं यहां पर कई बिल्डिंग नजर आ रही हैं बिल्डिंग के पास में गार्डन है।

गार्डन के आसपास बाउंड्री बनी हुई है गार्डन में हरी हरी घास है और पेड़ लगे हुए हैं।

हॉल की दीवारों पे बल्ब होल्डर लगे हुए हैं हॉल की दीवारों पर स्विच बोर्ड भी लगे हुए हैं हॉल में --

जैसे कि देख पा रहे हो एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है पेट्रोल पंप को येलो कलर से पेंट किया गया है पेट्रोल पंप प--

पास में एक मैंन रोड है जहां पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है।

जैसा की देख पा रही हूँ एक दुकान नज़र आ रही है दुकान में कांच के ग्लास रखे हुए है एक गैस स्टोव --

जैसा की देख पा रही हूँ एक दुकान नज़र आ रहा है दुकान के अंदर दो लोग बैठे हुए है दुकान के अंदर एक ग्रीन कलर का प्लास्टिक का बाल्टी रखा हुआ है दुकान के--